इस फोटो में लग रहा है खुसी ने खाना ऑर्डर किया हुआ है और उसने अपने खाने की फोटो खींची है जिसमें ग्रीन चटनी और --

ब्रेड फूल दिखाई दे रहा है साथ में जो रखा हुआ है वो कुछ चटनी और डाली हुई है इसमें।

सब नए हैं और एक साथ में बहोत सारी मात्रा में ज्यादा हैं जो कि यह दिखाते हैं की शॉप का व्यू है क्योंकि कोई एक साथ तो इतने सामान लेके नहीं आएगा।

और वॉल का चित्र भी बहोत बढ़िया दिखाई दे रहा है जिसमें पीछे सोफा व लगा हुआ है ताकि--

क्योंकि दिवाली के टाइम पे भी ऐसा दृश्य होता है जो कि बहुत ही रंगीन और खूबसूरत दिख रहा है पीछे लोग भी खड़े हैं बहुत सारे।

और जो फर्स्ट वाला पत्थर है उसके अंदर कुछ लिपि में कुछ लिखा हुआ हो सकता है संदेश और ऊपर वाले में मूर्ति जैसा प्रतीत हो रहा है।

यह एक लाइब्रेरी का दृश्य है जिसके अंदर बहोत सारे स्टूडेंट बैठे हैं जो की चार पांच की मात्रा में है।

और इसमें बहुत रॉयल्टी जैसे दिखाई दे कलर ग्रेडिंग को यूज की है जैसे कि पीछे बैकग्राउंड ब्लैक और लाइटिंग भी बढ़िया तरीके से यूज की हुई है।

यह कुछ गवर्नमेंट काम वाली जगह लग रही है क्योंकि इसके अंदर दिख रहे है कि ऊपर गवर्नमेंट के कुछ चलचित्र दिखाई दे रहे हैं।

क्योंकि इसमें ड्रीम सिटी दिखा रखा है मेमोरीज फॉरएवर मतलब की कोई सहारा हो तो देखिए उसे लगे कि हा इसका --

सोलर प्लांट भी लगा हुआ है जोकि इसको बिजली सप्लाई कर रहा है और रात का भी बहोत बढ़िया दिखाई दे रहा है लाइटिंग को की वजह से।

इंग्लिश सीखाने वाली है ताकि मोटिवेशन देंगे तभी बच्चे स्पीकिंग इंग्लिश बोल सकेंगे क्योंकि बहोत सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं इंग्लिश बोलने टाइम ।

लग रहा है कि ये बहुत पुराना बैंक है जोकि बहुत पुरानी चीजों का है क्योंकि आसपास कोई और नहीं दिख रहा सिर्फ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यह एक होटल का दृश्य है जिस होटल का नाम है होटल हीरा लाल --

और इसमें लैपटॉप दिखा गया है सामने कस्टमर भी दिख रहे है तो हालांकि यह एक ई मित्र का दृश्य है।

इसमें चटनी और प्याज और भूजिए डाल के कुछ बना रखा है जोकि बीकानेर में आम बात है क्योंकि बीकानेर में --

यह एक बच्चों की स्कूल है जो कि यहां पर सीसरा के रास्ते शेरगुल रोड पे है खाजूवाला रोड साइड में--